यहाँ पे आपलोग विजिट कीजिये। इसके नीचे न्यू हेयर लुक जेंट्स ब्यूटी पारलर है उसके बगल में न्यू हेयर लुक वीवो का --

यहाँ स्कूल कॉलेज प्रतियोगिता परीक्षाओं की सभी पुस्तके उपलब्ध हैं। ये शब्बीर काम्प्लेक्स है जो मजीपुर चौक मुजफ्परपुर में स्थित है।

यह एक बुक स्टेशनरी है जिसका नाम है चारु बुकस एंड स्टेशनरी ।

इससे हम पढ़ाई करते है। यहाँ पे थोक एवं खुदरा बिक्रेता उपलब्ध है। यहां पे आइये और खरीदारी कीजिये।

ये बैंक मुज्जफरपुर में पड़ता है जवाहरलाल रोड पे। इसके नीचे ट्रेडर्स का दुकान है और इस ये जो है वो सेकंड फ्लोर पे है।

आप लोग यहाँ से सफर कर सकते हैं। यहाँ से मुज्जफरपुर मोतिहारी मोतीपुर समस्तीपुर सुपौल सहरसा के लिए बस यहाँ पर मिलती--

यह बस स्टैंड मुज्जफरपुर का है। यहाँ पे बस की सारी सेवाएं उपलब्ध है।

यहाँ पे कार्यालय भी है जहाँ पे हमलोग टिकट खरीद सकते हैं और बस के सेवा का लाभ ले सकते हैं। यहाँ से आप लोग सफर कर सकते हैं।

यहाँ पे पढाई की सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। आपलोग यहाँ पे आइये और ज्ञान लीजिये आपलोग एडमिस्शन करवाइये।